दिखाई दे रहा है जहाँ एक लड़का बैठा हुआ है पानी दिख रहा है बहोत सारे पानी है।

घर दिखाई दे रहा है जिसके सामने मे एक लड़का सेल्फ़ी ले रहा है घर के अंदर अ घर के बाहर गेट लगा हुआ--

अ ब्लैक कलर का कुछ पहना हुआ है च और अ चार्जर है चार्जर लगा हुआ चार्ज लगा हुआ है।

बुक सेंटर है जहाँ बहोत सारे बुक्स है वहाँ लोग उसे बेच रहे है।